यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें हरे रंग की छोटी-छोटी घास लगी हुई है मैदान में एक बड़ी सी इमारत बनी हुई है।

और पत्थरों में बहुत सारे गड़ गड्डे भी है जिनमें पानी भरा हुआ है वही बहुत सारे बड़े ब- ड़े पेड़ - पोधे भी लगे हुए है जो हरे रंग के दिखाई दे रहे है।

जिनहोने गुलाबी और सफेद रंग की टी-शर्ट पहन रखी हुई है वही इमारत के बहार बोहोत बड़े-बड़े लंबे-लंबे पेड़ पौधे भी लगे हुए है उनपे फूलों का रंग हरा है।

यहाँ पर एक रोड है जिसके बाजू मे एक टपरिया सी बनी हुई है इसके अंदर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है वही ऊपर एक बोर्ड भी लगा है।

यहाँ पर ई बहुत बड़ी इमारत बनी हुई है इमारत का रंग काला और सफेद है और इमारत के पास बहुत सारी बड़े बड़े --